ग्रीन लाईटिंग की गई है और इसके अंदर लोगों का रस है और लोग आपस में खुशगपियों में ऐ--

बोहुत बड़े से प्यारे सलीके से बनाया गया है जिसमें --

जिसकी ईमारतें है टूट-फूट का शिकार है और ये ईमारत द्रराख्‍तों में घिरी हुई है इस--

बहुत बड़ी मिकदार में चीज़े पड़ी हुई है और इसमे मुकलीफ़ किस्म के रैक्स लगे हुए है ये

ये एक इम्तिहानी मर्कस की तस्‍वीर है जिसमें उम्‍मीदवार --

और यह इम्तिहानी बड़े खूबसूरत और तरीके से सेट किया गया है इस।

ये एक बहुत बड़े मंदिर की तस्‍वीर है जिसकी --

और इस ग्राउंड की बिल्डिंग बहुत खूबसूरत महरून कलर की है और इसकी छत --

यह एक फन फेस्टिवल की तस्वीर है जिस पर लोग।

ये एक बगीचे की तस्‍वीर है जिसमें बड़े सलीके से रहा--

ये एक सैलून शॉप की तस्‍वीर है जिसमें लोग --

ये एक फ्रेश एरिया की तस्वीर है जिसमें--

सड़क के किनारों पर खूबसूरती से दरख़्त उगे हुए हैं।

ये एक ऑटो स्‍पेयर पोर्ट की शॉप है जिसमें मुकतलिब किस्‍म की गाडि़यों के पार्ट --

ये एक खूबसूरत झील की तस्‍वीर है जिस --